ये लकड़ी का घर है छोटा छोटा घर है ये घर बहोत अच्छा लग रहा है लकड़ी का सजावट भी बहोत अच्छा है।

इनका नाम साथी तृण है जो बहुत बड़ा है।

और ये दिन का सीन लग रहा है ट्रैक पर पांच व्यक्ति खड़ा है।

यह होतल का सीन लग रहा है होतल बहुत सुंदल लग रहा ब्यूटीफुल लग रहा उसके बगल में एक पेर है।

और इसको एक कला है इसमें एक भी बच्चा नहीं इसमें बहुत सारे पेर--

तला बिल्डिंग है जहां पर दो व्यक्ति खड़ा है। चार पांच नीचे बाइक है जिसमें है।

पांच छोह व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति चार एक व्यक्ति चार साथ खाना खा रहे है और वो बहोत अच्छा लग रहा--

यहां काले-काले बादल छाए हुए हैं इस पर पंछ व्यक्ति है।

यह एक अस्पताल का सिम सीन लग रहा है जिसका नाम संजीबुनिया अस्पताल है।

का सीन लग रहा है एक ब्लैक कलर का कुर्सी है एक स्वामी विवेकानंद का पिक्चर है।

अनेक प्रकार के साइकिल होंगे एक व्यक्ति साइकिल में बैठा हुआ है।

जिसमें तीन ए_सी_ लगा हुआ है उसके ऊपर एक करकत लगा हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा--